गार्डन है छोटा सा घर है और बनंदन कलर में पुताया हुआ है छोटा-छोटा पेड़-पौधा है घांस है।

बहुत सारे गाड़िया है और यहाँ पढ़ने आते है।

यह गार्डन है आस-पास झूले है और छोटे छोटे झोपड़िया है पेड़-पौधे है छोटे छोटे घास है बच्चा है|

एक ऑफिस है यहां काम करते हैं यहां पर कुर्सीया हैं भगवान का मूर्ति है।

आस पास अच्छे लग रहे है।

यहाँ पर एक टेबल है केला है संतरा है आमा है सेब हैमोसम्बी है एक डब्बा है बाल्टी है एक पुरी है।

यह जंगल है यहाँ लोग घूमने आए है लाल कलर का बैग पकड़ा हुआ है आस-पास पेड़ पौधा है है पाँच झने है अच्छे लग रहे हैं।

एक मंदिर है यहाँ पर पुतला है हरे रंग में पुताया है ए--